वह एक बिल्डिंग है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

एक बड़ा सा रूम है जहां पे टाइल्स लगा हुआ है।

यहां पे दुर्गा जी का मूर्ति बना हुआ--

और कलश रखा हुआ है पूजा का समान रखा हुआ है।

खिड़की है खिड़की के बाहर पेड़ पौधा है।

यहां कुछ दो पहिया वाहन भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहां गाड़ी सर्विसिंग का दुकान है जहां पर ढेर सारा कार लगा हुआ है रंग बिरंगा का

और पीला कलर से पेंट किया हुआ है।

मूर्ति है और एक व्यक्ति--

बनाया हुआ है जिसमें कागज पत्तर--

और इधर भी तीन आदमी खड़े हुए हैं।

अ जिम करने वाला मशीन रखा हुआ है।

और टाइल्स लगा हुआ है और हरा कलर का कालीन है एक लड़का सेल्फी ले रहा है।

बड़ा सा नाद है नाद सिमिट का बना हुआ है।

एक ब्लैक कलर का गाय है एक बछड़ा है।

बीचे बीच रोड है और हवेली के बाहर--

इस दृश्य मे एक बड़ा सा इमारत दिखाई दे रहा है।

कुछ कपड़ों को सेल्फ में भी रखा गया है।

सब बंद हैं खिड़की ढ़ेर सारा है ऊपर में करकट दिया हुआ है।

यहां पे झंडा फहराने वाला है।

यहां सामने एक रोड भी दिख रहा है।

एक बड़ा सा रूम जहा पे पलंग ह--

दो कुर्सी रेड कलर का है ए_सी है और खिड़की पे पर्दा लगा हुआ है।

वाइट कलर से रूम पेंट किया हुआ है टाइल्स लगा हुआ है।

और ऊपर में पोस्टर टांगा हुआ है सीढ़ी बनाया हुआ स्टील का रेलिंग दिया हुआ है।

एक बड़ा सा होटल है होटल में गमले में फूल लगाया हुआ है।

एक बड़ा सा घना जंगल है जहां पे ढेर अह पहाड़ है।

ब्लू कलर का टीशर्ट पहने हुए हैं।

हरा कलर का अबीर है लाल कलर का है।

पीला कलर है और बैग रखा हुआ है बगल में।

एक बड़ा सा कंपनी है जहां पे टाइल्स लगा हुआ है।

सामने में बहोत सारी किताबें भी रखी हुई है।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है।